हॉल में दो साइड बहोत ही ज्यादा सी कुर्सियाँ रखी हुई हैं।

उपर की और बहोत सारी वाइट वाइट कलर की लाइट जल रही है।

एक सफ़ेद कलर की मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर तीन मीनारें बनी हुई हैं छोटी छोटी।

सीढियों पर पेंट हुआ है सफ़ेद और महरून कलर का।

साइड में एक लंबा सा टॉवर भी बना हुआ है। इसके बगल में एक बहोत बड़ा सा हरा कलर का पेड़ निकला हुआ है।

होटल के अदंर एक आदमी जाता हुआ नजर आ रहा है। होटल काफी पुराना बना हुआ नजर आ रहा है।

किले के बाहर एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ है।

एक बाइक की सिर्फ पहिया नजर आ रही है।

साइड में एक बड़ा सा काउंटर भी रखा हुवा है उसके पास बहोत सारी चेयर रखे हुवे है।

साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है डी.जे. के पास जहाँ --

और ब्लू कलर की टी-शर्ट्स पहन रखी है। गॉगल्स भी लगाया हुआ है।